ये कोई पोखरा है और पोखरे में काफी सारे कमल के फूल है और कमल के फूल देखने में काफी अच्छे लगते है कमल के फूल लोगों को पसंद होता है और यह कीचड़ में ही खिलते हैं।

और काफ़ी सारे लोग किताब खरीदते हैं। यहां पे सभी प्रकार की किताबें मिलती है जैसे कि कंपटीशन लेवल एजुकेशन स्कूल --

और वह अपने श्रद्धा भाव से नवाज अदा करते हैं।

काफी लोग पूजा करान करने जाते हैं सभी लोग मंदिर में |

और यहां के टीचर भी काफ़ी अच्छे होते हैं।